पशु घास खा रहे हैं और पीछे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इसके साथ कुछ समान भीं दिखाई दे रहा है इस शॉप में बहोत सारे लोग लेने के लिए आए हैं और लाइट जलाई गई है।

इसमें रायता रूडी मिलाया जा रहा है।

यह फोटो एक सब्जी मंडी की ली गई है इसमें बी--

थैलियां भी दिखाई दे रही है और एक दुकान में कट्टा रखा गया है और अंदर इसमें शैंपू --

हल्का सा मकान दिखाई दे रहा है और--

अ दीवारों में पेंट किया गया है और नीचे टाइलें लगाई गई है।

दुकाने बहोत सारी बनी हुई--

यह फोटो एक सड़क की ली गई है और यह वो जंगल के बीचो बीच फोटो ली गई है इसमें सड़क किनारे एक--

फोटो लगाई गई है और पोस्टर लगाया गया है और इसमें सामने--

और काउंटर के कुछ सामान रखा गया है।